देखो रास्ते पर एक गाड़ी खड़ी है।

काफी सस्ता है तभी --

ये जो है डिग्री कॉलेज है। काफी लंबा-चौड़ा बना हुआ है।